और इसके पीछे एक मल्टी बन रही है भवन बनी है दो-तीन और उसमें भी काले रंग का कलर है अभी इसमे कलर नहीं हुआ है काला-काला दिखाई दे रहा है सामने खुला में आकाश दिखाई दे रहा है।

और इसमें वृक्ष भी दिखाई दे रहें हैं और यहाँ पे कलर है कुरकुरे भी डाले हुए हैं दिखाई दे रहें हैं।

सामने एक छोटा तालाब दिखाई दे रहा है जो पानी से भरा हुआ है इसमें एक दो नाव चल रही है बाजू में एक साइकिल खड़ी है जो लाल कलर की है।

यह एक हॉल का सीन दिखाई दे रहा है एक बड़ा लम्बा-चौड़ा हॉल है इसके नीचे टाइल्स लगे हुए है और इसमें ऊपर चार-पांच पंखे दिखाई दे रहे है पंखे लगे हुए है।